दो तीन बाइक है जो की खड़ा हैअभी और कुछ लेडिस है।

इधर भी बहुत सारा घर है इधर भी घर है नीचे कचरा है जो की प्लास्टिक का डस्टबिन है।

और इधर भी कुछ है कपड़ा टेंगा हुआ है जो की रेड कलर का दिख रहे है जमीन है और कुछ झाडियाँ है।

यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये एक किराना स्टोर है ओर इस यहाँ पर बुक भी मिलता है जोकी ऊपर पोस्टर लगा हुआ है ओर एक आदमी है एक लड़का है जोकी बहार समान खरीद रहा हैं।

में हम देख पा रहे हैक की एक बुक का शॉप है जहा पे दो तीन आदमी हैअपने चेयर पे बैठे हुए है।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

इधर भी कुर्सी रखा हुआ है चेयर वगैरा है और व्हाइट रंग का कुछ टांगा हुआ है पर्दा टाईप का पीछे भी है दिवाल--

ऊपर पेड़ नजर आ रहा है उधर साइड में पूल है खंबा है गाड़ी लगा हुआ है।